इमेज को देख कर ऐसा लग रहा है की ये किसी होटल की इमेज है जिसका नाम होटल रामा है यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है होटल की बिल्डिंग लाल और क्रीम रंग से रंगी हुई है यहाँ पर निचे एक भइया खड़े हुए है।

यहाँ पर काफी सारे लोग यात्रा कर के वापस आ रहे है लोग अपने सामान के साथ यहाँ से वापस आ रहे है यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है।

और यह जहाँ पर कैंलडर रखा हुआ है काफी सारी फाइल्स रखी हुई है| और--

इस बेंक की बिल्डिंग वाईट एवं रेड रंग से रंगी हुई है ।